अ यह द्रिश काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी पार्टी का होगा इसमें ये सब जो तो किया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है आग जैसा निकल रहा है बट यह आग नहीं है। यह लाइट सब है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है चारों तरफ लाइट है किसी अ पार्टी या फंक्शन का होगा।